फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके पीछे काफी सारे बुक्स शेल्फ है जिसमें काफी सारे रैक है जिसमें काफी सारे बुक्स लगाए गए है खड़े और आड़े धन्यवाद।

काफी सारे छोटे -छोटे लाकड़े के स्तंभ दिखाई दे रहे हैं।

फोटो मे एक रास्ता दिखाई दे रहा है इम्म काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है एक कमरा दिखाई दे रहा है जिस पे सी और उसके ऊपर से दो सर्किल बने हुए है।

उसके नीचे काफी सारे दो कार खड़ी है एक कार का वहा पे काम चालू है काफी सारे लोग वहां पे काम कर रहे है काफी सामान बीखरा पड़ा है।

फोटो में उम एक आदमी दिखाई दे रहा है दो औरत दिखाई दे रही है एक टेबल दिखाई दे रहा हैं ।

ज़मीन दिखाई दे रही है कई जगह घाँस फूँस और कई जगह पानी डला हुआ-- ये जगह काफी पथरीली और काफी सुन्दर है।